यहां ऊपर दुकान का नाम लिखा है चिकन डिनर --

उसके साथ ही साथ बगल में एक गली है।

लाल रंग दिख रहा है।

कोई शादी फंक्शन वाला हॉल है।

ऊपर में फूल वगैरा लगा के सजा रखा है।

ऐसा पुल दिख रहा है।

और दूसरा व्यक्ति वो अ रिसेप्शन में जो व्यक्ति बैठा है उससे बातें कर रहा है।

यह कुछ कीमती मैटेरियल्स का दुकान लग रहा है।

ऊपर बोर्ड में राधा स्टोर्स जि एम स्पोर्ट्स के नाम से लिखा है।

यहां एक बैग की दुकाने है।

जहां पर अपने द्वारा बनाया गया बैग सब है।

जिसके अंदर दो रास्ते दिख रही है।

एक पक्के की रोड है बगल में बड़ा बड़ा दो वृक्ष है।

दु दुकान में बहुत भारी भरकम समान है।

पेड़ बड़े बड़े वृक्ष है।

और उसके आगे एक रास्ता है।

बीच में एक कच्चे रास्ते हैं।